और पीछे एक वो भी लगा हुआ हैं।

कैफे है जिसका नाम मोर ओवर कॉफी है।

इसमें एक आदमी दुकान के बाजू में खड़ा हुवा हैं।

यह एक दुकान है इसमें बहुत सारे बैग्स पड़े हुए हैं।

और बिंदी ती है और बहुत सारे सामान हैं।

इसमें दो कार्स खड़ी हुई हैं।

सारी खाने के पकवान बन रहे हैं।

इस मस्जिद में कुछ लोग--

जिम की एक्सरसाइज मशीन रखी हुई है।

रेस्टोरेंट है इसका नाम आर एस रेस्टोरेंट एंड --

यह एक ज्वेलरी का शोरूम --